यहाँ एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है इसमें बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है वहा चेयर लगी हुई दिखाई दे रही है सामने एक --

हरा दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा। अंदर क्रेटर दिखाई दे रहे। जिसका रंग हरा दिखाई दे रहा है। साईड में एक शटर दिखाई दे रही। शटर का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है दो रखा हुआ दिखाई दे रहा है यह एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ सब्जिया रखी हुई दिखाई दे रही है सब्जियों का कलर लाल पीला एवं हरा दिखाई दे रहा है क्रेट रखी हुई दिखाई दे रही --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

दिखाई दे रही है। एक खम्भा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पास एक गाय खड़ी दिखाई दे रही है। इसका कलर लाल दिखाई दे रहा है। साइकिल दिखाई दे रही है।